यह एक प्राचीन गुफा है जिसके अंदर बहुत सारी ईंटे भी लगी हुई है और कुछ प्राचीन कला भी है और निचे के तरफ बहुत अलग अलग ]

तरह के फर्श भी लगे हुए है आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

यहाँ एक जगह है जगह के के चारो और पेड़ पौधे लगे हुए है और आस पास बहुत सारी बसे भी खड़ी है।